यह व्यायाम क्लास है जिसमें व्यायाम मशीने रखी हुई हैं।

कोई बिल्डिंग के आगे बहुत बड़े झाड हैं शो के कुछ झाड लगे हैं कुछ जगहों पे कार खड़ी है एक सफेद कलर की और काम करने आए कुछ --

एक ऑफिस है किसी चीज़ का उसके सामने उस ऑफिस के सामने पुलिस की वेन खड़ी है दो पुलिस लोग हैं खड़े और बहुत सारी गर्दी है वहाँ पे।

हॉस्पिटल के कर्मचारी है जो हॉस्पिटल के कर्मचारी और टेबल पे कुर्सी लगा के बैठे हैं उनके पीछे बोर्ड लगे हुए हैं।